और एक सड़क जैसी यहां पर बनी हुई है और यह बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर दो काली टंकिया पड़ी--

इसका दरवाजा बहुत ही सुंदर बनाया गया है।

मजदूर छत पर चढ़े हुए हैं। छत पर सरिया बिछा हुआ है और--

पीछे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

यहां पर चार आदमी हमें दिख रहे हैं नीचे की तरफ एक घर बना हुआ हम यहां देख सकते हैं।

लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां हम देख सकते हैं कि यह ए एयरटल फोर जी बुक वर्ल्ड है।

और दीवारों पर पेंटिंग्स लगी हुई है।

एक आदमी यहां पर फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहा है।

दीवार पर पेंटिंग लगी हुई है दो बड़ी बड़ी खिड़कियां है जिनमें पर्दे लगे हुए हम यहां देख सकते हैं।